नमस्कार ! opening a savings bank account पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट यानि कि बचत खाता खोलने की औपचारिकताओं के बारे में सीखेंगे
18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति बचत खाता खोलने का हक़दार होता है
हम बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देने वाले किसी भी बैंक में बचत खाता खोल सकते हैं
खाता खोलने के लिए हमें किसी भी बैंक की करीबी शाखा में जाना होगा और फॉर्म 60 लेना होगा
फॉर्म 60 इस प्रकार दिखता है
प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए मैं sbi बैंक का फॉर्म 60 उपयोग करुँगी
वही फॉर्म थोड़े से बदलावों के साथ अन्य बैंकों में भी उपलब्ध होगा
वो फॉर्म एक पुस्तिका के रूप में 4 से 8 पेजेस का सेट होता है
पहले पेज पर हम शीर्षक account opening form देख सकते हैं
अगले पेज पर जाएँ
pan कार्ड न होने की स्थिति में खाता खोलने का यह फॉर्म हमें भरना है
सबसे पहले हमें अपना पूरा नाम और पता लिखना है
अतः मैं अपना नाम और घर का पता लिखूंगी
आगे हमें स्पष्ट करना है कि हम किस तरह का खाता खोलना चाहते हैं उदाहरण के लिए savings bank account current account
मैं savings bank account लिख रही हूँ
एक बचत खाता savings bank account वो होता है जिसमें छोटी बचत की जा सकती है
हम बचत खाते में संगठित जमा राशि पर ब्याज की छोटी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं
current account यानि चालू खाता सामान्यतः व्यापार के लिए होता है
इसमें उपलब्ध जमा राशि पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देगा लेकिन ओवरड्रॉफ्ट खाते में जमा से अधिक राशि निकालना सुविधा देता है
फॉर्म 60 पर वापस आते हैं
आगे हमें लेनदेन की राशि स्पष्ट करनी है
मैं 500 रूपए लिखूँगी
आप अपने अनुसार कोई भी राशि लिख सकते हैं
अगला क्षेत्रare you assessed to tax है क्या आप कर के लिए मूल्यांकित हैं
यहाँ मैं no करुँगी
चूँकि हमने no लिखा हम इन क्षेत्रों को छोड़ सकते हैं
हमें अपने फॉर्म के साथ एक वैध पते का प्रमाणपत्र देना है जैसे कि:
चूँकि राशन कार्ड सबसे सामान्य पते का प्रमाणपत्र है मैं राशन कार्ड लिखूँगी
आप पते के प्रमाणपत्र के लिए जो दस्तावेज़ चाहते हैं लिख सकते हैं
अगला भाग सत्यापन verification है
यहाँ पहले खाली स्थान में हम अपना नाम लिखेंगे
अगले 3 खाली स्थानों में हम वो तारीख़ लिखेंगे जब हम यह फॉर्म भर रहे हैं
मैं इस फॉर्म को 20 जून 2015 को भर रही हूँ अतः मैं 20 जून 2015 लिखूँगी
आप वो तारीख़ लिखें जब आप यह फॉर्म भर रहे हैं
मैं बरकापुर से हूँ अतः मैं स्थान में बरकापुर लिखूँगी
आप जहाँ के निवासी हैं वो स्थान लिखें
अंततः फॉर्म पर हस्ताक्षर करें
अगला सेक्शन फॉर्म da1 यानि नॉमिनेशन नामांकन फॉर्म है
यह हमेशा नामांकित करने के लिए एक अच्छी आदत है कि खाताधारक उसी व्यक्ति को नामित करे जिसे खाताधारक किसी कारणवश उसकी मृत्यु के पश्चात उसके खाते की जमा राशि देना चाहता हो
नामांकित व्यक्ति निम्न हो सकता है : एक वयस्क जैसे जीवनसाथी मातापिता भाईबहन या एक अल्पवयस्क जैसे अपना बच्चा भतीजी/भांजी या भतीजा/भांजा
एक बार फिर यहाँ पहले खाली स्थान में नाम भरें
अतः पहले खाली स्थान में मैं राधा तिवारी भरूँगी
दूसरे खाली स्थान में हमें उस बैंक का विवरण भरना जिसमें खाता है
अतः मैं बरकापुर शाखा लिखूँगी
आपको यहाँ अपने बैंक और शाखा का नाम लिखना है
यहाँ जमा चीज़ों का विवरण उल्लिखित करना है
जमा का प्रकार बचत होगा अभी के लिये खाता संख्या खाली रहेगा क्योंकि खाता अभी तक सक्रिय नहीं है
नामांकित व्यक्ति का विवरण यहाँ भरना है
आयु
अगर नामांकित व्यक्ति उस तारीख़ को जो फॉर्म में उल्लिखित है अल्पवयस्क है तो खाता धारक को निम्न करना है
अगर नामांकित व्यक्ति अल्पवयस्क है तो हमें इस सेक्शन को भरना है
यहाँ श्री/श्रीमती में हमें नियुक्त वयस्क का नाम भरना है
मैं शांता मिश्रा भरूँगी
फिर पते का विवरण भरें
अगला क्षेत्र तारीख़ है
मैं बॉक्सेस में 20 06 2015 भरूँगी
फिर मैं स्थान place में बरकापुर भरूँगी
आप जहाँ के निवासी हैं वो स्थान भरें
अंततः दिए गए बॉक्स में हस्ताक्षर करें
इसके नीचे हमें दो गवाहों के हस्ताक्षर नाम और उनका पता लेना है
गवाह वो लोग होते हैं जो हमें लम्बे समय से जानते हैं
अतः हमें अपना गवाह बनाने के लिए अपने दो परिचित व्यक्तियों से निवेदन करना है और फॉर्म के इस भाग को पूरा करना है
यह फॉर्म 60 को भरने की प्रक्रिया को पूरा करता है
पेज 4 पर जाएँ
यहाँ पहला सेक्शन पहचान का विवरण है
यहाँ दो कॉलम्स हैं
पहचान प्रमाण proof of identity कॉलम में हमें अपने कोई एक पहचान पत्र का विवरण देना होगा
सबसे अधिक सामान्य विकल्प सूचीबद्ध हैं
हमें अपने पास उपलब्ध id के आधार पर सूचीबद्ध विकल्पों में से किसी एक पर टिक करना है
मैं वोटर id कार्ड पर टिक करुँगी
उसी कॉलम के दूसरे भाग में वोटर id कार्ड पर प्रदर्शित नम्बर लिखें
अगर आपने कोई दूसरा विकल्प जैसे ड्राइविंग लाइसेंस चुना है तो वो नम्बर लिखें
आगे कार्ड जहाँ से जारी हुआ है वो स्थान लिखें
अंततः कार्ड जारी होने की तारीख़ लिखें
पते के प्रमाण के कॉलम में हमें अपने पते का विवरण देना है
याद रखें मैंने पहले राशन कार्ड चुना था
अतः मैं राशन कार्ड विकल्प पर टिक करुँगी
उसी कॉलम के दूसरे भाग में राशन कार्ड पर प्रदर्शित नम्बर लिखें
अगर आपने कोई अन्य विकल्प चुना है जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा bank account statement तो वो नम्बर लिखें
आगे राशन कार्ड या अन्य दस्तावेज़ के जारी होने का स्थान भरें
और अंततः राशन कार्ड या अन्य दस्तावेज़ के जारी होने की तारीख़ भरें
इस पेज पर दूसरा सेक्शन परिचय विवरण introduction details है
परिचयकर्ता: एक व्यक्ति जिसका पहले से ही बैंक की उसी शाखा में खाता है उसको हमारा परिचय कराना है
हमें यहाँ अपने परिचयकर्ता का नाम भरना है जैसे कि परिचयकर्ता की पासबुक में है
फिर परिचयकर्ता की पासबुक की तरह ही cif नम्बर और खाता नम्बर भरना है
इसके बाद महीने या वर्षों की वो संख्या भरें जब से परिचयकर्ता का यह खाता है
आखिरी खाली स्थान में महीने या वर्षों की वो संख्या भरनी है कि परिचयकर्ता आपको कब से जनता है
यहाँ हम तारीख भरेंगे
फिर परिचयकर्ता यहाँ हस्ताक्षर करेगा
अंततः हम वचन पर हस्ताक्षर करेंगे
अब पेज 5 पर आएं
इस बॉक्स में हमें अपना पासपोर्ट साइज़ फोटो लगाना है
और यहाँ प्रदर्शित पहले बॉक्स में हस्ताक्षर करने हैं
इसके साथ हमारा खाता खोलने का आवेदन पत्र पूरा होता है
और यह हमारे दस्तावेज़ों की एक कॉपी के साथ बैंक में जमा करने के लिए तैयार है
जब हम बैंक जाएँ तो हमें अपने पूर्ण आवेदन पत्र और सत्यापन के लिए अपने राशन कार्ड और वोटर id कार्ड की मूल प्रति के साथ राशन कार्ड और वोटर id कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जानी है
अगर आपके पास अन्य दस्तावेज़ों जैसे पहचान और पते के प्रमाण पूर्ण हैं तो निश्चित कर लें कि आपके पास उनकी कॉपी हो
हमें यह भी निश्चित करना है कि हमने अपना पासपोर्ट साइज़ फोटो पेज 5 पर लगा दिया हो
प्रमाणीकरण अधिकारी यह चेक करेगा कि फॉर्म ठीक से भरा हो और दस्तावेज़ सही हों
एक बार जब सत्यापन पूरा हो जाये तो हमारा आवेदनपत्र प्रसंस्कृत होगा
हमारा बचत खाता बैंक की उस शाखा में खोला जायेगा
अब हम इस खाते में जो भी राशि जमा करना चाहते हैं जमा कर सकते हैं
इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने एक बैंक में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया को सीखा
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रॉजेक्ट टीम अनेक सूचनात्मक और सामान्य जानकारी के विषयों पर ऑडियोवीडियो ट्यूटोरियल्स बनाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है
विषयों की पूरी सूची के लिए कृपया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
आशा करती हूँ यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी था
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ